यहाँ पर काफी बड़ी -सी दुकान है लंबी जहाँ दोनों तरफ डिब्बे रखे हुये है पैकिट रखे हुये पोलिथीन पेक हुआ समान रखा हुआ हैगा।

और यहाँ पर बाइक भी रखी हुई है दो-दो जो रेड ब्लैक कलर की हेंगीं और एक साइड मे बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है काफी बड़ा सा।